यहां में ब्राउन कलर का टाइल्स बिछाया हुआ है।

एक आदमी पर्पल ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं।

यहां मे एक आदमी है जो ग्रीन कलर मे दिख रहे हैं।

यहां में सफेद मारकर से कुछ कुछ लिखा हुआ है।

साइड मे एक पोल भी बना हुआ है जो ब्लैक कलर मे दिख रह रहा है।

साइड में एक जंगल है जो ग्रीन कलर में दिख रहा है और नीचे में लकड़ी है जो ब्लैक कलर में दिख रहा है।

यहां में एक फ्रिज दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा चिप्स का पैकेट दिखाई दे रहा है।

यहां में कुछ कराटे स्टूडेंट को कुछ प्राइज दे रहे।

यहां में घास बहोत ज्यादा दिखाई दे रहा यहां में।

और ये नया नया मकई तोरा वाला है।